पीछे में कुछ और सामानों को भी देख पा रही हूं जोकि --

सामने काउंटर पे एक औरत बैठी हुई हैं एक आदमी--

सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं उनके चारों तरफ लालिमा है।

पीछे की तरफ मैं एक काउंटर भी देख रही हूं जिस पे एक जैकेट रखा हुआ है।